गोरेलाल से झरने झरने गिरे नदी की ओर बेहते हुए जा रहे हैं।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा इंसान बैठा हुआ है।

इस चित्र में बहोत बड़ी राशन की दुकान और डेयरी की दुकान है।

और दुकान के सामने एक बड़ी सी रोड है।

राशन दुकान में कस्टमर खड़े हुए हैं और समान ले रहे हैं।

लंबी सी एक सोफा बनी हुई है नीचे टाइल्स लगे हुए हैं।

और दीवार पे कुछ पोस्टर लगा हुआ है।

इस चित्र में टेबल है टेबल में कांच के बॉईल में पूरे आइसक्रीम कुल्फी रखे गई है।

च्चों के लिए भी छोटे छोटे बच्चों के लिए भी छोटी सायकल रखी गई है।

इस चित्र मे एक बहोत बड़ा गाड़ी का शोरूम है।

इस चित्र में बहोत बड़ा गार्डन है गार्डन में बहोत सारे मशीन रखे गए है झूला झूलने के --

इस चित्र में चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बड़ी सी ब्रिज है।

और कांच से बने गेट है।

चारों तरफ जाली जाली लगी है।

इस चित्र में बहोत बड़ा सा--

आइसक्रीम फ्रीजर जैसा है बहुत सारी आइसक्रीम वगैरा रखी हुई है।

इस चित्र में बहुत बड़ा सा हॉल है हॉल के अंदर ये डेकोरेट किया गया है।

इस चित्र में बहोत बड़ासा कपड़े का दुकान है जिसमें--

और बहोत सारे चेयर लगी हुई है।

और छोटे छोटे गमले में पौधे लगे हुए हैं।